ये पुस्तकालय है इसमें पूरा बुक रखा गया है और इसमें बच्चे भी है और बुजुर्ग भी है।

और जवानों के लिए भी ये साइकिल अलग- अलग परकार का हैं।

ये फूलों से सजाया हुआ मंच है और इधर रेड कलर का फूल है उधर वाइट कलर का और बीच में सोफा भी है और बीच में लोग भी है जो सजा रहें हैं और लाइट भी लगा है।

और मछली भी पकड़ते है खेती भी करते है ।